सभी रिक्शायों मे झंडा लगा है इंडिया का और ऊपर पेड़ हैं।

और ये डबल बस है। जिसके ऊपर भी सो सकते हैं। डबल सीट ऑरेंज व्हाइट कलर की बस --